जिकरा बैकग्राउंड लेके पिज़्ज़ा का फोटो लिया है| ये होटल बहुत प्र प्रसिद्ध है| छोटे टाइम में बहुत सक्सेसफुल हो गया है|

आप देख सकते है कि बहुत सारे क्रिकेट बैट है और खास कर इमारत एम_आर_एफ का भी देख सकते जो सचिन तेंदुलकर उसे यूज करते थे।

इस दृश्य में आप देख सकते हैं की इन्दिको वीरान के ग्राउंड स्टाफ हेडीकैप --

इस पुरस्कार के डांस परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है स्टेज में आप छे और अन्य डांसर को देख सकते हैं।

इधर बहुत हरियाली हैं चारों ओर एक आदमी मोटर साइकिल में सवार सब्जियाँ घर ले जा रहा --